और कुछ व्यक्ति सामान वगैरह खरीदते हुए नजर आ रहे हैं।

मल्टी जैसी बनी है जोकि बड़ी है।

ये एक मछली की शॉप है और ये बड़ा सा मछली का एक मार्केट है।

और कुछ प्लास्टिक का सामान बाहर की तरफ जमा हुआ है।

विश्वविद्यालय के बाहर एक गोल मेहराब का बड़ा सा दरवाजा लगा है।

और ये एक अ हॉस्पिटल के अंदर के --

इस पिक्चर में एक अ इस्कूल है इस्कूल के बाहर कुछ बस वगैरह खड़ी हुई हैं जोकि ऑरेंज कलर की बड़ी बड़ी बसें हैं।

इस पिक्चर में एक एंबुलेंस खड़ी हुई है जो कि वाइट कलर की एंबुलेंस है।

जो कि रेड पिंक वाइट और कई सारे कलर के ट्रक हैं।

आगे की तरफ एक बड़ा सा काच लगा हुआ है।

जहां पर कुछ गोल मेहराब के डिज़ाइन बने हुए ।

और उसमें कुछ सीमेंट की जालियां वागेरा लगी हुई हैं।

जहां पर कई सारे सीमेंट की बोरियां रखी हैं।

और उन पर अल्ट्राटेक सीमेंट लिखा हुआ है।

कई सारे लोहे के ऍगल वगेरा भी रखे हुए हैं।

और कुछ व्यक्ति और कुछ पंडित खड़े हुए हैं।

टीचर आपस में कुछ बात करती हुई नजर आ रही है।

जहां पर कई सारी खिड़कियां और दरवाजे लगे हुए हैं।

और ये एक भारत एजेंसी के नाम से बड़ी सी एजेंसी बनी हुई है।

ये एक एच_पी का बड़ा सा पेट्रोल पंप बना है।

सामने की तरफ कुछ लोग बैठें हुए हैं।

पास में एक स्टेचर भी रखी हुई है।

फैक्ट्री के अंदर कई सारे वर्कर खड़े हुए हैं।

इस पिक्चर में एक गाड़ियों का शोरूम बना हुआ है।

और कुछ छोटे बच्चे भी फिसलपट्टियां झूल रहे हैं।

जहाँ पर कई सारी कुर्सियाँ और टेबलें लगी हैं।